ये एक दुकान है हम्म इसमें बिस्कुट रखे हुए हैं बलून लग रहे हैं एक गेट है एक एसी है।

हैऔर बिस्कुट ऐसे मैगी अदर सामान रखे हुए है बोनविटा है और भी---- और भी हम्म--

ग्रीन गर-बेग्राउंड है।